बगल में बहुत सारी ब्राउन और रेड और ऑफ व्हाइट कलर की टाइलें लगी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक फिश एक्वेरियम की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे अलग अलग तरह के फिश के --

वहीं इनका खाना और सामने की दीवार पर कुछ तस्वीरें भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

और एक हाथी जैसा बना हुआ है जीसपे एक बाउल वाला फिश एक्वेरियम भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और नीचे की तरफ भी एक पुजारी बैठा हुआ दिख रहा है और तीन ऊपर में खड़े हुए दिख रहे हैं।

ये छप्पन भोग लगता हुआ नजर आ रहा है और नीचे में दरी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर पीले कलर की दीवारें बनी है।

का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है और बाहर में बहोत सारी गाड़ियां जिसमें कार है और --

ये एक मंदिर श्री झटपट बालाजी एंड राधा गोविंद जी का मंदिर के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यहां पर एक नॉनवेज का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

ऊपर की और कुछ लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है और नीचे कुछ कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है।